कोई किसी से कुछ पूछ रहा है एक इंसान खडा हुआ है जिसने येलो कलर की टीशर्ट पहनी हुई हैं।

यहाँ पे कुछ लोग अपने-अपने अलग-अलग काम कर रहें है यहाँ पे एक रेड कलर की चेयरें रखी हुई है जिसके ऊपर एक इनसान हाथ रखा हुआ है और यहाँ पे एक इनसान यहाँ बनियान पहने इस --

कि हम इस फोटो मे देख सकते हैं एक मैदान हैं जिस मे लाईन से लोग खड़े बच्चे खड़े हुये हैं उसके ही सामने एक इंसान दो इंसान खड़े हुये हैं उसके ही जो उस पीछे बडी सी बिल्डिंग हैं जो की ग्रे कलर कि हैं।

नाव का कलर है ऑरेंज व्हाइट एण्ड ग्रीन का कॉम्बीनैशन और उसमे--